स्कूटीयों का रंग सफेद है तथा सीट का रंग काला है स्कूटीयों के आगे एक यूनिक तरह की चेयर लगी हुई है।

कंपनी की ग्रे रंग की टी शर्ट भी पहनी हुई है।